हवाई जहाज दिखाई दे रहा है हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सड़क दिखाई दे रहा है यहाँ पर आदमी चढ़ते हुए हवाई जहाज मे दिखाई दे रहे है; यहाँ पर--

यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बड़े-बड़े गाड़ी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर--